यह चित्र मे क्या क्या मिलता है वो फोटो लगे हुए है।

इस क्षेत्र में चार चक्के वाली गाड़ी दिख रही है।

पीछे बोर्ड पर टैंक का आकार बनाया हुआ है।

सीढ़ी पे ढेर सारे चप्पल दिख रहे हैं दीवाल पर एक मीटर लगा हुआ हैं।

और साइड मे एक ए_सी दिख रही है और कांच की खिड़कियां दिख रही है।

घर के सामने कच्चा मैदान दिख रहा है। सीढ़ी पर एक लोहे की रॉड है।

यही चित्र में सामने सफेद कलर का दो खंभे दिख रहे है।

सामने लाल कलर का नेट बांध हुआ है और एक मस्त मंडप लगाया है उस पे दो झूमर लगाए है।

और कमरे के अंदर एक व्हाइट कलर की लाइट जल रही है।

ढेर सारे कपड़े दिख रहे हैं एक छोटा उँ टेबल दिख रहा है।

यह चित्र में सामने कांच की खिड़कियां और दरवाजे दिख रहे है।

छत पर पंखे लगे हुए हैं और दो झूमर दिख रहा है।

दीवार पे घड़ी लगी हुई है कांच का काला कलर का खिड़की लगा हुआ है।

सामने एक पंखा लगा हुआ है एक कथक कलर का टेबल दिख रहा है सामने।

और बाजू में सीढ़ी दिख रही है नीचे दो कुर्सियां दिख रही है।

उस पर हेल्मेट रखा हुआ है सामने एक कुर्सी दिख रही है।

उस पर लिखा है सामने टाइगर पार्क है टाइगर ग्राउंड है।